ऊपर पूल बनाया हुआ है और पूल का पिलर भी दिखाई दे रहा है।

पोल का खम्भा भी दिखाई दे रहा है जिसमें तार खींचा गया है।

यह एक शोरूम का दृश्य है और शोरूम के बाहर बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।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

पीछे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं घर का खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

टेबल पे पानी का बोतल और ग्लास रखा हुआ है।

हाथ में ग्लव्स भी दिखाई दे रहा है और सर पे हेलमेट लगाया हुआ है जो व्हाईट कलर का है।

बहुत सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं और सामने झोला टंगा हुआ है।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

रूम में वायरिंग किया गया है और लाइट भी जल रहा है।

फूल का माल भी दिखाई दे रहा है।